पीछे बोहोत घना जंगल है।

पीछे उसका पूरा सोने से ढका हुआ है। वो भी सोने का है।

और गाड़ी-बाड़ी आता है।

है सब। नीचे ज़मीन है।

ये एक पूरा चार पांच का बच्चा है जो चित्रकारी कर रहा है।

बोहोत सारा कपड़ा सुख रहा है। सुखाने दिया है। नीचे गाड़ी चल रहा है। बोहोत --

नीचे बोहोत सारा टोटो खरा है सब।

इसके आगे सामने कुछ नहीं है। सब पेड़ ही है। सब पेड़ --

मंदिर के नीचे एक मंदिर है जहाँ पर भगवान --

काला है। गोरा है। सब कलर का जूता मिलता है।

के ऊपर भी पेड़ गुजरा है। कुछ ऐसे पेड़ है। पेड़ के ऊपर --

बंद क्यों किया वो पता नहीं लेकिन बंद है।

मुँह में माक्स पेहने खरा हुआ है। एक जन कपड़ा पेहना है। जिन्ने रुमाल बांधा हुआ है।

एक दुकान है। जहाँ पे बच्चे का फोटो लगा हुआ है।

गाड़ी वाड़ी है। बाइक फाइक रखा हुआ है। सब कोई देख रहा है। यहाँ पे इसको उसको देख रहा है।

एक लड़का खड़ा हुए हैं। सब खड़ा होके देख रहा हैं।

यहाँ पे एक दुकान है जहाॅं पे बोहोत सारा --